यहाँ रेत है कुछ साइड में कुछ झूला लगा है जिसका कलर नीला है उसपे कुछ बच्चे बेठे है सामने एक दुकान है जिसका कलर कुछ सफ़ेद और लाल है।

अ उससे पहले एक घर बना है काफी बड़ा सारा जिसका कलर पीला और नारंगी है और उसमे एक सीढ़ी है।

साइड में कुछ घास वगेरा लगी है और सामने बड़ा पेड़ है ।

पीले रंग से लिखा है और सफेद रंग से लिखा है एक निशान बना है उसके साइड में जो कि हरे रंग से --